ए कुच्छ शतरंजी नज़र आ रही यहा पर एक काउंटर भी नज़र आ रहा है यहा के टाइल्स का कलर ब्लॅक और ग्रीन मे है।

चेयर्स नजर आ रहे है चेयर्स के पीछे भी एक मन न चेयर नजर आ रही है जिसका कलर पिंक अँड व्हाइट ही है।

ये एक रोड फिट की फोटो हैं जहा पर एक स्कूटी बी जा रही है यहा पर ठेले पर बनाना बिक रहे हैं और सामने एक इलैक्ट्रिक खंबा है और साइड मे झाड भी हैं।

इस फोटो मे एक हाइवे नजर आ रही जहा पर एक स्कूटी नजर आ रही है और एक रेड कार और एक व्हाइट कार और टू --

इस फोटो में एक हायवे नजर आ रहा है जहा पर एक बहुत बड़ा झाड है जहा पर एक बोर्ड लगा हुआ है और एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है और कुछ छोटे छोटे झाड भी नजर आ--

यहाँ पर कलर करता हुआ एक लड़का नजर आ रहा है। जो ब्लेक कलर की कर को गोल्डन कलर कर रहा है जो की बहुत अच्छे से कर रहा है शायद इस गाड़ी को मार लगा हुआ है इसी लिए उसे कलर कर रहा है।

औरत पीछे कुर्सी पर बैठी हुई है यहा पर फायर अलार्म भी नजर आ रहा है और एक फॅन भी नजर आ रहा हैं।

झाड़ी नजर आ रहे है और नीचे की लकड़िया पड़ी हुई नजर आ रही है।

ये एक हॉस्पिटल है जिसमे चीज़ करते हुए छे डॉक्टर नज़र आ रहे हैं शायद वो ओपरेशन आकर फोटो ले रहे हैं यहाँ पर एक डॉक्टर के जेब में मोबाइल नज़र आ रहा है।